यहां पे सम्मेलन का मेला लगा हुआ है बहुत सारी बहुत सारी यहां पे पब्लिक है बलूंस भी दिख रहे है मंडप सजे हुए है एण्ड पूजा हो रही है।

खेत में बहुत ज्यादा हरियाली है।